बड़ा मंदिर है जिसमें स्टील की जालियां लगी हुई है और इसमें जीने दिख रहे हैं नीचे कुछ फरशियाँ हैं उसके पीछे एक बाउंड्री है जिस पर कपड़े डले हैं।

और यहाँ पर पंखा भी लगा हुआ है ऊपर चादर भी हैं और नीचे एक जिंने हैं साइड से कच्चा घर है ऊपर पेड़ साइड से पेड़ भी --

एक एक नीले कलर का शटर है यहाँ पे खिड़कियां है यहाँ की जो दीवारें है वो पीली पकी है साइड से बहोत सारे पेड़ है यहाँ कथाई कलर की टेबल रखी है यहाँ पे जो जा रही हैं वो काली कलर की

यहाँ पर गाड़ियां खड़ी है यहाँ कांच कांच लगा है सामने जिसके अंदर कुछ बच्चे खड़े है पुतले खड़े है।

यहाँ की जो बिल्डिंग है वो गुलाबी कलर की पुती हुई है कथई कलर के यहाँ दरवाजे हैं यहाँ पे वजन तोलने वाली एक मशीन रखी हुई है यहाँ पे कुछ गाड़ी हैं गाड़ियों पे हेलमेट लगे हुए हैं।

एक् ब्लू कलर का एक टंकी भी रखी है छोटी सी। यहाँ पे सामने कुछपब्लिक भी दिख रही है और यहाँ जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी-बड़ी है। कुछ पीली कलर की हैं कुछ सफेद कलर की हैं।

लाल कलर का बैटरी वाला ऑटो जा रहा है यहाँ पे सामने कुछ घरी बनी है और कुछ भी पेड़ भी है यहाँ पे मैन रोड भी है इस साइकिल में एक औरत खड़ी है एक बैठी है।

पोस्टर लग हुआ है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। जीप एक अंकल बुड्ढे अंकल आ रहे हैं जो की सफेद कुर्ता सफेद धोती गले में घमछा पहने हैं। सामने से एक लड़का आ रहा है। यहाँ पे एक व्हाइट कार भी खड़ी हैं। कुछ गाड़ी ब्लैक कलर की है कुछ नीली --